आई.सी.आई.सी.आई. बैंक है जो कि बहुत ही अच्छा बैंक है और इस बैंक में बहुत सारी सुविधाएं हैं। लोन भी मिलता है और पैसा इस में आसानी से निकाल सकते हैं और इस के बगल में एक डॉक्टर धीरेंदर प्रसाद है जो की बहुत ही अच्छे से इलाज कर --

ये एक बहुत ही बड़ा नदी है जो की इस नदी में अभी ब्रिज बना दिया है जिस के कारण हम लोगों को बहुत सुविधाएं मिलते हैं। इस नदी को क्रॉस करने में कोई परेशानी नहीं होता है और बहुत लोग इस --

ये जिम ट्रेनर है जो कि बहुत अच्छा जिम करते है | यहाँ हम लोग जिम करने के लिए यहीं आते है और जिम हम लोगो को करना चाहिए | जिम करने से शरीर फिट और स्वस्थ रहता है | बहुत ही अच्छा लगता है जिम करने से ।